यह एक रेस्टोरेंट का पिक्चर लग रहा है यहां पे तीन टेबल लगे हुए है यहां एक बेसिन भी है इसमें जो रंगोली बनी हुई है --

यह कॉस्मेटिक की दुकान लग रही है यहां का डेकोरेशन भी काफी प्यारा है यहां पे बहुत अलग-अलग तरह के कॉस्मेटिक के मेटेरियल रखे हुए है।

ये पिक्चर योगा क्लास कि लग रही है। यहाँ पे टोटल चौदह लोग लग रहें हैं जिसमें एक गुरु जी भी हैं।

इस तस्वीर में एक लड़का फसल के साथ सेल्फी ले रहा है ये किसी चीज की फसल लगी हुई है ।

यहाँ पे एक इंसान बाहर में खड़ा है कुछ कुर्सियाँ भी लगी है और ऐसा लग रहा है कुछ लोग अंदर भी हैं ।

और कुछ लोग बैठे भी है यहाँ दूर छोटे-छोटे पेड़ दिख रहे हैं जो काफी प्यारे लग रहे हैं।

यहाँ के सिटींग अरेंजमेंट भी काफी बढ़िया है एक साथ बहुत सारे लोगो को बैठने के लिए अरेंजमेंट किया गया है।

इसलिए यहाँ पे बहुत सारी भीड़ इक्कठ्ठी है लोग दर्शन करने के लिए खड़े है।

यह दृश्य किसी पार्क के बाहर से लिए हुए पिक्चर की है सामने बड़ी-सी ईमारत दिख रही है ।

ये इमेज कनक ऑटोमोबाइल्स का है यहाँ पे कार का सर्विस सेंटर है।

हर तरह के स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल कराए जाते हैं ये सारे उनके टीम मेंबर्स है इनमें लड़की और --

और यहाँ पे इलेवन ट्वेल्थ बी.एस.सी. ऑनर्स मेडिकल के भी क्लासेज चलते है वो भी लगाया गया है।

और कुछ पार्ट्स भी रखे हुए हैं जैसे मोबिल इंजन आयल ।

अंदर शोरूम में बहुत सारी लाइटें भी लगी हैं। काफी बड़ा शोरूम --

यह तस्वीर किसी जनरल स्टोर का लग रहा है यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट भी रखे हुए है ।

ग्रॉसरी का सामान सब कुछ अवेलेबल होता है।

यह तस्वीर कपड़े के शोरूम का है। यहाँ पे मम्मी डैडी और बेबीज सबके कपड़े मिलते है।

बैग भी पड़े हुए है बट स्टूडेंट्स यहाँ दिखाई नहीं दे रहे है।

यहाँ पे सामने एक ट्रक भी खड़ी है एक कार भी खड़ी है इसके बैक ग्राउंड मे कुछ पौधे भी लगे है ।

खाने की सामान मिलती है और यहाँ बर्गर वगैरा भी अवेलेबल है।

भीड़ है यहाँ पंडाल काफी प्यारा सजा हुआ है काफी लोगो की भीड़ भी इक्कठा हुई है।